एक शॉप है एसबीआई बैंक भी है और ये बैंक खुली हुई है एक गाड़ी खड़ी हुई है एक बाइक खड़ी हुई है उसके पास मे एक शॉप ऑर है ।